और बहोत सारे आदमी है जो अगल बगल से खड़ा हुआ है।

यहां पर एक दुकान है दुकान के नीचे बहुत आदमी खड़ा है और पीछे बहुत पेड़ पौधे लगे हुए है।

एक बहोत बड़ा बिल्डिंग है बिल्डिंग के बाहर बहोत सारे पेड़ पौधे हैं जो उनकी पत्तियां है जो हरे हरे से दिख रहे हैं।

एक यहां पे दुकान है जो बहोत अच्छे से सजे हुए हैं और बाहर में एक लड़का है जो पिक ले रहा है।

एक बाल्टिन है यहां पे रखा हुआ।

एक बहोत बड़ा सा यहां पे एक मु मूर्ति बना हुआ है जिसके पीछे एक बिल्डिंग भी है।

एक बहोत बड़ा एक रूम है रूम में एक एक बेड लगा हुआ है।

एक बहोत बड़ा रोड है जिस पे एक छोटा सा पुल भी है और साइड में बहोत पेर ओर लगा हुआ है।

न यहां पे बहोत बिल्डिंग दिख रहे हैं और असमान एकदम इतना अच्छा दिख रहा है दो तीन कलर का।

एक बहोत बड़ा घर है जहां पे बहुत सारे राइस लगा हुआ हैं और बहोत एक-दो बाइक भी लगा हुआ है।